काफी खूबसूरत लग रही है कमल के फूल की बेला है।

हार्ड दीवाल पे एक लक्ष्मी जी की तस्वीर टंगी हुई है और वही ऊपर एक फैन लगा हुआ है।

और हाल में पंखे भी लगे काफी सारी कुर्सियां रखी हुईं जिन पे कुछ गर्ल्स ब्वॉयज बैठे हुए हैं।

लाइटिंग भी लगी हुई है पिलर पे एक घड़ी लगी हुई है।

छोटा सा मकान बना हुआ है जिसके बाहर एक होटल का--

और कुछ लोग बाहर घूम रहे हैं आप देख सकते हैं।